यह दृश्य एक बिल्डिंग का है जो की पीले रंग का है।

एक आदमी काले रंग का छाता ले रखा है।

उसके ऊपर में भी एक पोस्टर चिपकाया हुआ जो कि येलो कलर का है।

यह दृश्य एक गाय की है जोकि काले और सफेद रंग की है।

दीवार पे एक घड़ी लगाई हुई है जो कि भूरे और सफेद रंग की हैं।

एक आदमी एक बाल्टी लेकर बैठा है बाल्टी का रंग सफेद और नीला है।

यह दृश्य एक दुकान का है जहां पे आगे में कंप्यूटर रखा हुआ जो कि काले रंग का है।

और नीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए हैं।